लाल पीले काले रंग के गुब्बारे ऊपर लगे हुए हैं।

मौसम नीले रंग का है।

उपर लाइट से लिखा है बारबर करके।

बहुत सारी लाइट लगी हुई है ऊपर लाइट लगी है उसमें लिखा है फ्रोजन जंक जंक्शन ।

गमले सफेद कलर के हैं उसमें पेड़ लगे हुए हैं एक सिलेंडर बगल में रखा हुआ है नीला रंग का।

एक पीला कलर का माला चढ़ा हुआ है।

जोकि पीले रंग से सजी हुई है।

इस चित्र में दो कैरम बोर्ड रखे हुए हैं।

ट्रेन जो है वह नीले और सफेद रंग की है।

यह चित्र एक मंदिर का है।

जो दरवाजा है वह शीशे का बना हुआ है।

जो कि ग्रे रंग की है फर्स्ट जो है वहां--

बाहर का नजारा बहुत ही अच्छा है।

की लड़ियां सजी हुई है आस पास ऊपर लाइट लगी हुई है।

काले रंग की टोपी और सफेद कलर का जैकेट नीले कलर की पैंट पहना हुआ है।

यह काम चल रहा है।

जो फ रोड है वा सीमेंट से बनी हुई हैं।